वॉल मे एक टी_बी टी_वी लगा है।

एक में जगदंबा सिलेक्शन लिखा है।

एक ने ओरिएंटा इंश्योरेंस लिखा है।

मंदिर में कुछ लग लोग आना जाना रहता है।

डैम के पास एक बहोत बड़ा पहाड़ है।

गाड़ी एक शेड के नीचे खड़ा है।

दुकान के अंदर एक बैटरी लगा हुआ है।

पास में उनका टीचर बैठा हुआ है।

क्लास के अंदर लाइट जल रहा है।

घर के पास एक रेलवे ट्रैक जा रहा है।

ब्लू बोर्ड में कुछ लिखा गया है।

चर्च के बाहर कुछ लोग जा रहे है।

ये एक नदी का दृश्य है।

ये शायद संध्या का समय है।

कार जहां पे पार्क है उसके साइड में एक बगीचा है।

ये एक बड़ा सा गार्डन जैसा लग रहा है।

रस्ते के दोनों साइड में वाइट कलर का एक बाउंड्री बना गया है।

यह एक मछली का मार्केट जैसा लग रहा है।

मछली वाले के ऊपर ब्लैक कलर का क्लॉथ लगा है।